अरे भाई ये तो यार बैंक है और काफी बड़ी बैंक है यार ये और इस बैंक का नाम तो एसबीआई बैंक है।

और ये इनका पेपर चल रहा बच्चों का आर्ट का और इनकी मैडम इनपे नजर रख रखी हैं। कोई चीटिंग वगेरा तो नहीं कर रहा है आर्ट के पेपर में।

अरे वाह यार भाई ये तो यार बाइक है कितनी अच्छी बाइक है यार भाई।

और इसका नाम है मेडी सिटी हॉस्पिटल ।

इतनी अच्छी रंगोली बना रहे हैं यार ये हरे गुलाबी नीले कलर से यार भाई बहुत सुंदर लगेगी जब ये पूरी बन जाएगी रंगोली यार।

ये तीन जने आ गए हैं बच्चे हैं पीछे इनकी मम्मी है इतना बढ़िया तरीके का योगा कर रहे हैं यार भाई ये।

कितने बढ़िया तरीके से सजाया गया है ये चर्च इसमें झालर लगा के लाईट लगा के दरी वरी बिछाई गई है। भाई यहां पे।

अरे वाह यार भाई कितना बड़ा मॉल है यार भाई और इस मॉल में तो भाई सर्फ बिकता है। कितना सारा ढेर सारा सर्फ लगा हुआ है यहां पर।

ऐसा लग रहा है जैसे यहां कुछ काम हो रहा हो यार भाई कितने सारे लोग हैं कितना बड़ा पार्क है यहां पर ये और बस वगैरह भी खड़ी है यार।

सभी कॉक का कदम लेते है भाई दीवाली पे मैंने भी लिए थे भाई।

कितना बड़ा ढावा है यार ये इतने अच्छे से यार कुर्सियां बिछा रखी है मेज लगा रखी है यार भाई।

कितना अच्छा लग रहा है यार भाई और ये एकदम रोस्टेड बना हुवा है। भाई चिकन कितना अच्छा लग रहा है। खाने में स्वादिष्ट एकदम चटनी से खाओ यार लगाकर बोहोत अच्छा लगता है भाई।